बहोत सारी बोट्स दिखाइ दे रही हैं बोट्स पर कुछ आदमी भी दिखाइ दे रहे हैं।

और एक कुलर का आगे वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक पुराने जमाने की महल की तरह की--